उसके नीचे भूरे रंग के बड़े पीप रखे हुए है वहां पे एक बड़ा दरवाज़ा है जिसके बाहर एक आदमी जा रहा है।

यह एक मछली बाजार है जिसमें कई लोग मछलियां बेच रहे है और एक पीले रंग के कपड़े पहने हुई --

यह इक बोहोत बड़ा सा दरवाज़ा है दरवाज़ा काला रंग का बनाया हुआ है और वहाँ पे तीन सीढ़ियाँ है।

यहाँ पे कई सारी महिला महिलाएं खड़ी हुई हैं उन महिलाओं ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए है उनमें से एक महिला --

उसमें लोहे के बहोत बड़े कबाड़ बनाये गए हैं उसमें कई सारे खाने की और पीने की चीजें रखी हुई हैं।

जिसमें चटनी रखी हुई है | वहाँ पे गोबी का सलाद रखा हुआ है और तंदूरी रखी हुई है।

यहाँ पे अलग-अलग चित्रों से अलग-अलग प्रकार की --

अस्पताल का नाम सदर अस्पताल हैं गोपाल जंग में हैं।

गुलाबी रंग की पट्टियां बनायी गयी है |

जहाँ पे व्यायाम के बहुत सारे उपकरण रखा रखे हुए हैं।

तारें लगाए हुए है वह लड़की नृत्य के एक मुद्रा में खड़ी हुई है।

चाय के बर्तन रखे हुए है में चाय भरी हुई है और दो चम्मच रखी हुई है।

चार-पाँच खंभे लग गए एक छत बनाई गई है |

भाग्य क्षेत्र की दूसरी और बोहोत बड़े-बड़े मकाने बनाये गए हैं।

यहाँ पे एक बहोत बड़ा सा खुला मैदान है वहाँ पे चार और सफ़ेद रंग की दीवाले बनाई गई हैं।

यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं और मंदिर अलग अलग हैं | वहाँ पे माँ काली --

वहाँ पे सफ़ेद रंग का एक वाहन खड़ा हुआ है |

वह रंग बिरंगी है उसके पीछे एक इमारत है और वहां पे बहुत सारे वाहन खड़े हुए हैं।

यह एक बहुत बड़ा समुंदर है जिसके चारो ओर बड़े हरयाली है।

यह एक बहुत बड़ा बागीचा है |